का कलर गाड़ी का है ब्लू ब्लैक और रेड में।

अपने ऊपर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

तीन काउंटर बने हुए हैं काउंटर में शीशा लगा हुआ है ऊपर--

उसके पीछे बहुत सारे लाइटे लगी हुई है लाइटे के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

नीचे एक डस्टबिन रखा हुआ है हरा कलर का एक स्कूटी और दो बाइक्स भी खड़ी है।

ऊपर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं रैक पे।

बिल्डिंग का कलर व्हाइट और स्काई में है उसके बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

सामने बहुत सारे आदमी खड़े हैं चेयर भी रखा हुआ है लाल ।

हैप्पी डेली लिखा हुआ है दो चेयर रेड कलर रखा हुआ है एक दो फ्रिज रखा हुआ है।

ऊपर पंखे लगाए हुए हैं बहुत सारे व्हाइट कलर के व्हाइट कलर का सीलिंग है।

यह एक कैफे का दृश्य है जहां सामने एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है।

ऊपर रेड भुज का चारों साइड सामने तारा बना हुआ है।

रोड से बहुत सारे आदमी जा रहे हैं सामने लाल कलर का पिलर रखा हुआ है।

चेयर भी लगा हुआ है व्हाइट कलर का ऊपर बहुत सारे लाइटे भी लगी व्हाइट कलर का।

बहुत सारी ए_सी भी लगे हुई हैं सामने एक डेस्क है ब्राउन कलर का कुछ आदमी चेयर पे बैठे हुए है।